अ बना हुआ है अ अन्दर की तरफ बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है अ और बहोत चौड़ा रोड दिख--

एक ऑटो है एक बीच में दो बस के बीच में गाय है और बरामदे में बोरी में कुछ कुछ रखाया है।